और घास भी है। यह पानी का साफ दिख रही है।

पीने का फिल्टर दी पानी का फिल्टर दिखा रही है टीन और टेबल कुर्सियां दिखा --